दिख रही है रोड दिख रहे हैं सफ़ेद आसमान दिख रहा है और भी पेड़ दिख रहे है जिसका रंग हरा है।

अं रंग-बिरंगी र्शटे पेहनी हुई है मैदान दिख रहा है हरी घास दिख रही है।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

एक और इमारत दिखाई दे रही है जो लाल रंग की है सीढ़ियाँ दिखाई दे रहे है सीढ़ियाँ पर एक आदमी चलते हुइ दिखाई दे रही है जो सफ़ेद रंग कि शर्ट पेहना हुआ --

सीढ़ी दिखाई दे रही है उसके सामने एक गाड़ी या एक साइकिल खड़ी हुई है गाड़ी का रंग काला है साइकिल का रंग काला है अंदर भी सीढ़ियां दिखाई दे रही है काँच की गेट दिख रहा है।

बालों का रंग हरा है कुछ सारा लोग सामने दिखाई दे रहे है साड़ियां पहने हुए हैं।

ई सब लोभी लोग दिखाई दे रहें हैं घर दिखाई दे र --

रोड दिख रही है रोड का रंग लाल है रोड के बीच में एक मूर्ति दिखाई दे रही है बुद्ध भगवान की मूर्ति है गेट दिख रहा है गेट भी लाल कलर का है।

दिख रहा है बीच पे दिख रहा है सफ़ेद आसमान दिख रहा है चारों तरफ़ पेड़ दिख रहें हैं हर तरफ पेड़ ही पेड़ है।

पेंट सीक रहें हैं दिवाल दिख रहा है दिवाल का रंग सफ़ेद है बिल्डिंग का रंग --

जो बने हुए हैं एक ड्रा दिख रहा है जो काले कलर का है ब्रोच के ऊपर एक लाल कलर का कुछ रखा हुआ है दो कुर्सियां रखी हैं जो काले कलर --

घास लगी हुई है लाल फूल लगे हुए हैं कुछ पेड़ दिख रहे है पेड़ की पत्तियों का रंग हरा है और भी पेड़ लगे हुए है उनके पत्तियों का रंग भी हरा है दो-चार खंभे दिखाई दे रहे है जो कि हरे कलर के है।

बहोत बड़ा जंगल दिख रहा है जंगल के बीच में तालाब दिख रहा तालाब के पानी का रंग नीला है चारों तरफ झाड़ पेड़ दिख रहे हैं पहाड़ दिख रहा है पहाड़ के सब सामने एक --

एक बहोत बडा गार्डन दिख रहा है गार्डन के बीच मे घास लगी है जो हरे कलर की है चारों तरफ फूल दिख रहे हैं जो की नीले है लाल है पीले दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ फूल के चार --

एक गेट दिख रही है जो काले रंग का है कुछ बैनर के चित्र बने हुए हैं।

एक बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है मैदान में बहुत सारी लाइने बनी हुई है मैदान के आसपास बहुत सारे पेड़ दिख रहे है पेड़ की पत्तियों का रंग हरा है एक बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग के रंग सफेद है।

दिख रहा है स्टेज का रंग सफेद है सीढ़ियां दिख रहा है सीढ़ियों का रंग भी सफेद है काले आसमान छाया हुआ है।

बड़ा सा खंभा दिख रहा है।

पीछे भी एक आदमी बैठा है जो की लाइनिंग्स शर्ट पेहना हुआ है उसके पीछे भी एक आदमी है।

दीवारों का रंग नीला है चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं लोगों ने --

चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं सफ़ेद रंग के ड्रेसेस पहने हुए हैं नीले कलर के के ड्रेसेस पहने हुए हैं मैदान दिख रहा है। मैदान में पत हरी झाड़ पे जहाज दिख रही है सफ़ेद आसमान है।

बड़ी दीवार छोटी दीवार दिख रही है चार ठो दीवार की परछाई दिख रही है जो काले रंग की है नीला आसमान है हर तरफ बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग का रंग सफेद है।

बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग का रंग सफ़ेद है हरा है बिल्डिंग के बालकनी में एक आदमी खड़ा हुआ है बालकनी नीले रंग --